और आगे में फ्रूट को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर रखा गया है।

और उसके अगल बगल में बहुत सारे फल रखे हुए हैं।

इस इमेज में एक रूम को दिखाया गया है जो कि रूम की छत की कलर वो सफेद रंग से रंगी हुई है और--

और यहां पर एक आदमी को बाइक ले जाते हुए दिखाया गया है।

और छत पर बहुत ही यूनिक तरीके से लाइट लगाया गया है।

जो की पुल के नीचे साइड की दीवार पर उसके ऊपर में रंग बिरंगे आकृति बनाई गई है।

और उसके ऊपर में लाइट लगी हुई है और कैमरे भी लगी हुई है।